जो एक मछली की दुकान की है। यहाँ पर काफ़ी सारी मरी हुई मछली पड़ी है और मछलियों के कुछ कटे हुऐ हिस्से भी दिख रहे हैं।

आहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है।